परदो लाइट और खम्बो और फूलों से बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की गई है डी.जे रखे हुए हैं बहुत सारी महिलाएं --

इस फोटो में एक रूम है।

पूरे ग्राउंड में हरियाली और पेड़ हैं। ग्राउंड के उस साइट बहुत सारी बिल्डिंग हैं और बड़े-बड़े पेड़ हैं।

कारीले के अंदर एक बोहोत बड़ा पेड़ लगा है वाहर बाइक रखी हुई है।

जिसमें एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। दुकान के अंदर बोहोत सारी बाटल्स --

इस फोटो में एक पार्क है। पार्क के अंदर स्विमिंग पूल है।

एक सोफा रखा हुआ है। सोफा के दोनों साइड गुलदस्ते रखे हुए हैं और --

मंच पर ए सोफा रखा है और सोफा के दोनों साइट --

तीन ऑटो रिक्शा एक बस जा रही है। ऑटो में दो लोग बैठे हुए हैं और एक लड़का खड़ा हुआ है।

और पत्थर पर एक लड़का बैग लिए खड़ा है और एक लड़का बैग लिए नीचे खड़ा है।